गा फ्लावर का गुच्छा है जो प्लास्टिक का है।

और एक आदमी गाड़ी से कुछ निकाल रहा है।

ये एक ढाबा है जहां कोको कोला का--

ये बच्चे यहां क्रिकेट खेल रहे हैं ये एक बड़ा सा खेल है।

वो फोल्डर खुला हुआ है एक आदमी बेठा है।

उससे और एक दूर में और एक बड़ा पहाड़ है।

रूम के साइड में है बहुत सारा गंदा है।